विशेष रूप से संस्कार अर्थशास्त्र के पाठशाला कार्यक्रम--

जैसे की पानी बोतल में या और कुछ जूस से भी--

इस तस्वीर में मुझे एक हरा रंग का दुकान दिखाया गया है जिसका दीवार का रंग सफेद है।

यह तस्वीर एक कमरा का हैं जिसका दरवाजा का कलर रग ब्राउन है और दीवार का कलर सफेद।

इस तस्वीर में भी विद्या इंस्टिट्यूट आफ इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी की बाहरी हिस्सा दिखाई गई है जिसमें एक एंट्री गेट की बोर्ड लगी हुई है।

जिसमे चार खिड़कियाँ और एक दरवाजा है।

के पास पे एक घर जिसकी छत है हरे रंग की।

यह तस्वीर एक दुकान का है जिसका दीवार का रंग सफेद है।

कई कप के रंग नीले सफेद हरा लाल पीला है और कुछ के तो अलग --

और उसके सामने एक क्लोसेट जिसपे की कुछ कपड़े टंगे हुए है।

और इस तस्वीर में दिखाएं हैं कुछ लोग इनमें से एक महिला ए_टी_एम पर है और एक पुरुष बाहर पर फोन में बात कर रही है और एक पुरुष दुकान के बाहर से कुछ ले रही है।

और इस कमरे में दो जने है जिन्होंने एक में से सफेद रंग की शर्ट पहनी है और दूसरे ने काली रंग की।

और इस कमरे का दीवार का रंग सफेद और काली--

इस पर कुछ कुशन बनाए गए हैं सोफे पर जिसका रंग है नीला।

इसके पास ब्राउन कलर की टेबल जिसके ऊपर एक लैपटॉप एक क्यू_आर कोड रखी गई है उसके पास एक लाल रंग की चेयर --

सामने पर है एक रोड उसके पीछे तरफ पढ़ी है आपकी कारावास।

इसमें कोई ऑटोमेटिक रोबोट कोई पियानो तो कोई रखी गई है।

इन और खिलौनों की रंग अलग अलग रंगों में बटी गई है कोई नीला हरा काला सफेद ढेर सारे रंगों में है।

और कुछ आगे चलते ही आपको दिखेगा एक लड़का सफेद रंग की शर्ट पहने हुए है साइकिल चलाते हुए।

यह तस्वीर एक म्यूजियम की है जिसमें कुछ मूर्तियां रखी हुई है।

इस तस्वीर में दो मूर्तियां दिखाया गया है जिनको फूल और मालओ से सजाया गया है।

इस तस्वीर पर दिखाया गया है एक कंस्ट्रक्शन साइट जिस पे एक आधा उठाया हुआ पिलर --

इनमें से कोई फूल है।